किसी मंदिर का फोटो दिख रहा है जिसके अंदर सामने जो है कुछ मूर्तियाँ बनी हुई दिख रही हैं। एक पिल्लर बना है। एक मूर्ति पीले कलर की दिखाई दे रही है। उसके नीचे कुछ फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

के अंदर फोटो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर गोल्डन कलर की दीवार बनी है उसके अंदर भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है। माला और कपड़ा पहने ऊपर के साइक मे कुछ कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं --

आस-पास कुछ फरसियाँ लगी दिखाई दे रही हैं। साइड में भगवान की फोटो और मूर्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं। इसमे कुछ पन्नी में कुछ भगवान की अगरबत्तियाँ और कुछ कागज रखे --

जिसके नीचे स्ट्रिंग लगा दिख रहा है सामने की साइड कुछ एक ट्रेन जैसा कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है जो ब्रिज जैसा दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है दीवार के ऊपर कुछ कपड़े दिखाई दे रहे है पीली और लाल कलर की फिसलपट्टी दिखाई दे रही है।

दो सेर दिखाई दे रहे है जिन्हे गोल्डन कलर किया गया दिख रहा है मंदिर की देवर के ऊपर ॐ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ पेर दिखाई दे रहे है एक ब्यक्ति हाथ मे झारू दिखाई दे रही है वो मंदिर के ऊपर।

सामने कुछ टेबल जैसे बानी हुई दिख रही है जिसके अन्दर कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोग सामने कुछ शोपिंग करते दिख रहे है उपर भी कुछ छत पे वाईट कलर की लाईटे जलती हुए दिखाई दे रही है ।